पेड़ खड़ा है और एक अदमी के पीछे एक आदमी आ रहा है और फ्लैट भी बहोत बड़ा है।

यहां पर भी एक बड़ा मंदिर हम देख रहा है। मंदिर का बोहोत गेट भी हम देख रहा है और बोहोत बड़ा जलना भी हम देख रहा है।

दो खड़ा है और दो वाशिंग मशीन यहाँ पर हम देख रहा है।

और पास मे एक बड़ा घर भियो घर भी हम दिख रहा है और एक रोड भी हम देख रहा है।

सेंट्रल लेवल लेखा भी एक घर घर हम देख रहा है।

पर एक रोट है रोट का रोट से उपड़ है दो ठेला गाडी है और --